यहां पर एक फुटबॉल एरिया है।

यहां थम्सअप की बॉटल्स का ट्रे है।

और कुछ झा पेड़ है वहाँ पर हरियाली है।

एक रेलवे स्टेशन है के ऊपर ब्रिज है रेलवे ट्रैक है वहाँ से रेलवे आने वाली है।

रेलवे स्टेशन पे कुछ छोटी-छोटी दुकानें लगी हुई है।

ये जिम है इसमें जिम के दीवालों पे पीला कलर लगा हुआ है।

यहाँ एक शॉप है जिसके द्वार पे टेडी बेयर टंग रहा है और द्वार के बाहर टंग रहे हैं ग्रेन कलर के वाले।